हल्के ब्लू कलर में है।

और थोड़ा सा घास साइड पे है।

दो बाइक पार्क किया हुआ है।

बहुत सारे ग्रीन कलर और रेड येलो कलर का फूल पे यहा झूल रहा है।

और ऊपर का जो कलर है वो थोड़ा सा मिक्स कलर है।

सफेद कपड़े उपर टंगा हुआ है।

दो लोग चल रहे हैं।

यहां पे मैं देख पा रहा हूँ बीबा का शोरूम ।

और दो चेयर दिख रहा है मुझे।